जो कम से कम पांच छे छे साल का होगा उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस डाली हुई है।

यह एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है इस तस्वीर में दो व्यक्ति बोट चला रहे हैं।

जहां पे कार को न्यू पेंट किया जा रहा है ये एक गैराज है जहां पर दो वर्कर्स है।

यह एक सुपर मार्केट है यह--

जो यहां परफॉर्मेंस देखने के लिए आए है।

फुटपाथ के दूसरे तरफ एक खाली रोड है।

पांच मैनिक्विन रखी हुई है।

ये एक मॉल है यहाँ एक एलीवेटर है दो एलीवेटर है एक ऊपर जाने के लिए --

लगे हुए है और मौसम भी सुहाना है।

कुछ समान चालीस से पचास रुपए के हैं।